और कुछ घास भी दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ एक हल्का सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

पीछे के तरफ सोने के रंग से बनी हुए चीजे दिख रही है तथा आगे तरफ कुछ फुल दिखाई दे रहे है।

तथा उसके पीछे की तरफ एक व्यक्ति लाल टीशर्ट और काले कच्छे में बिना जूते पहने हुए दिखाई दे रहा है नीचे के तरफ कुछ जिम का अन्य सामान रखा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में बहुत सारी महिलाए खड़ी दिखाई दे रही है तथा कुछ लोग बेठे हुए दिखाई दे रहे है।

यह फोटो किसी पुस्तकालय का लग रहा है तथा ऊपर की तरफ कुछ लाईटे लगी हुई दिख रही है तथा नीचे की तरफ कुछ खानो में कुछ पुस्तके रखी हुई दिख रही हैं पुस्तको की संख्या पचास से अधिक है तथा सभी पुस्तक अलग अलग तरीके की है।

यह फोटो किसी दुकान का फोटो दिखाया गया है जिसमें कुछ महिलाओं के पुतले लटके हुए दिख रहे हैं। उन महिलाओं के पुतलों ने कुछ महिलाओं के वस्त्र पेहने हुए हैं तथा पीछे की तरफ कुछ पुरुषें और लड़कियों के कपड़े भी लटके दिखाई दे रहे हैं।

तथा इस फोटो में किसी दुकान का दरवाजा दिखाया गया है। जिसके ऊपर कांच का दरवाजा चढ़ा हुआ है।

कुल गाडियों की संख्या दस से अधिक दिख रही है तथा आगे की तरफ दो गाड़िया जा रही है एक गाड़ी का रंग पीला है तथा एक गाडी का रंग सफ़ेद है।

इस फोटो में यह फोटो किसी पुल के ऊपर से खीचा हुवा लग रहा है तथा नीचे की तरफ बहुत सारा पानी बहते हुवे दिख रहा है और पीछे की तरफ बहुत सारी घास --

तथा आगे की तरफ बाई तरफ एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है नीले रंग की उसके उपर नैंसी लिखा हुआ है और दाए तरफ एक काले रंग की बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।